एक दीवाल है एक पोस्टर लगा हुआ है इसमें का हैंडल रखा हुआ है जो गोल्डन कलर का है।

फूल की दूकान लगायी है ।जो रंगे बिरंगए फूल है। जो पिले और सफेद और गुलाबी लाल--

लाइट पे टंट लगा हुआ हैं जो गुलाबी रंग का शफेद रंग के ऊपर का साइड पे लाइट हैं जो पीले रंग की लाइट लगी हुई हैं।

कुछ लोग औरत बाहर खड़े हुए है जो मछली ले रहे है टिने का रंग शफेद है और कुछ केंदु कड़े है।

और एक बहोत सारे फूल है जो लाल पीले शफेद रंग के फूल हैं नीले रंग के फूल हैं कुछ पीस फूल रखा हुआ है स्टेंड में फूल रखे हुए है जो बल्तिया और गुलदश्ते बनाये गए है।

और एक पलेट में मछली र कार्टून के अंदर भी मछली रखी गई है जो शफेद रंग का कार्टून है और टेप किया गया है जो कथई रंग का टेप है।